पढ़ रहे हैं और यहाँ पे माइक लगा हुआ है सभी स्पीकर में बोल रहे हैं।

बहुत बड़ा आदमी सब कोई पे यहाँ पर बैठा हुआ हैं यहाँ पर घूमने आते-जाते हैं और पेड़-पौधा बड़े-बड़े हैं यहाँ प्रधान